लिख रही है नो पार्किंग का एरिया नजर आ रहा है।

पीच कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है जिसपे हरे रंग की कारीगरी की गई है कुछ खिड़कियां और कुछ दरवाजे भी नजर आ रहे हैं हरे रंग के पेड़ नजर आ रहे हैं।

यह एक किले का सेटअप लग रहा है किले की दीवारें पत्थर की बनी होती है इसीलिए हमे ऐसा लग रहा --

इसमें एक एंट्रेंस पॉइंट दिखाया गया है जहां से आप--

जिसमें एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो कि कांच की बनी हुई है नीचे ही नीचे सबसे नीचे आई_सी_आई बैंक है उसके ऊपर --

प्रिंटर मशीन और घोड़े की एक फोटो नजर आ रही है और एक पीले रंग की दीवार भी नजर आ रही है।

यहां पर एक स्कूल का एरिया नजर आ रहा है जहां बहुत से पीले रंग की बसें खड़ी है और बहुत सी --

जिसके अंदर बहुत से लोग खड़े हुए नजर आ र--

यह एक आर्टिफिशियल फूलों की दुकान है।

इस फोटो में एक पार्क का एरिया दिखाया गया है जहां पर एक मोर नजर आ रहा है।

इसमें हरी घास की बहुत बढ़िया तरीके से कटिंग की गई है और यहां पर लिखा हुआ है जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा।

एक टेबल रखी गई है इसमें टिशु को एक डिजाइन से बनाया गया है और टिशु का रंग ऑरेंज कलर का है।

यह एक स्टेशनरी की दुकान लग रही है जो की लाल रंगों में लिखा गया--

इसके अंदर एक लकड़ी की टेबल नजर आ रही है दो कुर्सियां नजर आ रही है जो की चॉकलेटी रंग कि है एक पीले रंग का दरवाजा नजर आ रहा है।

खंभे नज़र आ रहे हैं जो की क्रीम कलर से रंगे हुए हैं फर्श पर लाल रंग के कार्पेट बिछे हुए हैं और छत पर बहुत सारे पंखे भी लगे हुए हैं।

यह एक जंतर मंतर की फोटो है जहां पर यह जयपुर में स्थित है और यहां पर एक दीवार नजर आ रही है बहोत बड़ी।

इसमें तीन लड़के नजर आ रहे हैं जो कि बजरी के ऊपर लेटे हुए हैं और एक हाथ ऊपर कर रखा है।

प्लेट सफेद और स्लेटी रंग की है।

इस फोटो में दो आदमी नजर आ रहे हैं और दो गेट नजर आ रहे हैं दोनों ही गेट स्काई ब्लू कलर के हैं एक गेट पर ताला लगा हुआ --